ये किसी वॉटरपार्क की फोटो हैं।

एस_एस_सी एच_एस_सी पुलिस रे की रेलवे --

ये किसी पार्क का दृश्य है जो की बहुत सुंदर--

ये ड्रीम्स पिज़्ज़ा कि --

हैं हमारे यहां सभी तरह के नक्शे बनाए जाते हैं।

और दाले अलग अलग उसमें रखी हैं दाल के पैकेट नमकीन के पैकेट --

सेट करवा रहा है।

पे पास कि शॉप है जोकि व्हाइट कलर कि रॉयल एनफील्ड को--

यहां पर कार और बाइक की साफ सफाई होती है।

ये एक छोटी सी स्कूल की या कॉलेज की पेंटिंग दिख रही--